बच्चे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं।

मंदिर के आगे तीन मूर्ति है।

इस फोटो में मुझे एक रूम नजर आ रहा है।

रूम के वॉल मे बहुत सारा टी_वी लगा हुआ है।

रूम के ऊपर एल_जी लिखा हुआ है।

ए_टी_एम के अंदर एक आदमी है।

दूसरा आदमी ए_टी_एम से बाहर निकल रहा है।

इस फोटो में मुझे एक नदी नजर आ रहा है।

नदी में बहोत सारे लोग हैं।

लोग शायद से पूजा कर रहा है।

नदी के ऊपर एक ब्रिज है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारा मूर्ति नजर आ रहा है।

मूर्ति भगवान का है मूर्ति के आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं।

पंडित जी ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

बिल्डिंग के आगे बहुत सारे फ्लावर पोट्स लगे हुए हैं।

बिल्डिंग के आगे बहोत सारे फाउंटेन हैं।

ये फोटो साइड से एक गैरेज का है इस फोटो में एक गाड़ी है।

गाड़ी शायद से सुजुकी कंपनी का है।

गाड़ी का नंबर टी एस जीरो नाइन इ के टू जीरो थ्री फाइव है।

तालाब के आस-पास बहुत सारे पेर हैं।

तालाब के पीछे बहुत सारे पहाड़ हैं।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा प्लेट नजर आ रहा है।

प्लेट के ऊपर बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज रखे हुए हैं।

प्लेट एक ब्ल्यू कलर के बास्केट के ऊपर रखा हुआ है।

चट्टान के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।

आदमी ने ब्राउन कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

रूम के ऊपर बहुत सारा लाइट लगा हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारा मिर्चा नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बास्केट नजर आ रहा है।

बास्केट के अंदर आलू रखा हुआ है।

बिल्डिंग के आगे बहुत सारे बाइक हैं।

कान के अंदर बहुत सारे बुक हैं।

दुकान के अंदर एक आदमी है।

आदमी ने ब्लू और सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

आदमी के हाथ में एक कलम है।

इस फोटो में मुझे एक झूला नजर आ रहा है।

झूलना येलो और ब्लैक कलर का है।

आदमी ने ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक रूम नजर आ रहा है।

ये फोटो शायद से एक कैफे का है।

रूम के वॉल में बहुत सारे चीजें रखे हुए हैं।

ये फोटो साइड से एक मार्केट का है।

इस फोटो में मुझे एक मंदिर नजर आ रहा है।

मंदिर के साइड में बहुत सारा बिल्डिंग है।

इस फोटो में एक ऑटो है।

इस फोटो में मुझे एक टावर नजर आ रहा है।

रूम का छत टीन का है।

इस फोटो में मुझे दो गाय नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक ग्राउंड नज़र आ रहा है ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं।

इस फोटो मे मुझे एक वॉल नजर आ रहा है।

वाल रेड और सफेद कलर का है।

इस फोटो में मुझे सूरज नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

इस फोटो मे मुझे सूरज नजर आ रहा है।

इस फोटो में टावर भी है।

इस फोटो में मुझे एक स्टेज नजर आ रहा है।

टेज के ऊपर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

इसके आगे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

स्टेज के ऊपर रेड कलर का लाइट जल रहा है।

इस फोटो में मुझे एक स्लाइड नजर आ रहा है।

स्लाइड यल्लो और ब्लू कलर का है।

लाइट का सी_डी ब्राउन कलर का है।

स्लाइड के पीछे बहोत सारे पेड़ हैं।

यह फोटो शायद से एक बस स्टेशन का है।

इस फोटो मे दो बस है।

इस फोटो में चार लोग हैं।

आदमी साइड से जिम में वर्कआउट कर रहा है।

इस फोटो में एक पंचिंग बैग है।

इस फोटो में मुझे एक मार्केट नजर आ रहा है।

मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं।

मार्केट के अंदर लोग सब्जी बेच रहे हैं।

तालाब में बहुत सारी महिला हैं।

इस फोटो में एक बाइक है।

इस फोटो में मुझे एक रूम नजर आ रहा है।

रूम के ऊपर एक स्टार है।

इस फोटो मे मुझे एक दुकान नजर आ रहा है।

दुकान के आगे दो रिक्शा खड़ा है।

दुकान के आगे एक आदमी खड़ा है।

एक रिक्शा ब्लू कलर का है।

दूसरा रिक्शा ग्रीन और येलो कलर का है।

फोटो में मुझे एक महेल नजर आ रहा है।

महल के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं।

इस फोटो में मुझे एक बस नज़र आ रहा है।

बस के ऊपर समीर लिखा हुआ है।

बस के आगे एक आदमी खड़ा है।

आदमी ने ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस फोटो में मुझे दो तालाब नज़र आ रहा है।

तलाब के साइड में एक चेयर है।

तालाब के बीच में एक लकड़ी लगा हुआ है।

लकड़ी के ऊपर लाइट लगा हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारा मक्का नजर आ रहा हैं।

मक्का का नीचे ब्राउन कलर का झूस है।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

एक आदमी ने अपने ऊपर कम्बल लपेटा हुआ है।

रूम के अंदर एक कार है।

हर को प्लास्टिक से रैप किया हुआ है।

इस फोटो मे मुझे एक आदमी नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक औरत नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है।

एक कुत्ता नजर आ रहा है।

यह फोटो साइड से एक मंदिर का है।

बटन के पास कुछ ड्रम और बास्केट रखे हुए हैं।

इस फोटो मे मुझे शेल्फ नजर आ रहा है।

शेल्फ में साइड से बहुत सारा अंडरवियर रखा हुआ है।

राइट में अमेरिकाना इनसाइड आउट लिखा हुआ है।

इस फोटो मे मुझे दो लोग नज़र आ रहा है।

रोड में एक गाड़ी खड़ा है।

गाड़ी का कलर सफेद है इस फोटो में मुझे दो बिल्डिंग नजर आ रहा है।

बिल्डिंग सफेद और ब्लू कलर का है।

इस फोटो में मुझे तीन रिक्शा दिख रहा है।

इसमें एक आदमी बैठा हुआ है आदमी के गले में गमछा है।

इस फोटो में मुझे एक दुल्हा नजर आ रहा है।

दूल्हा ने गोल्डन कलर का शेरवानी पहना हुआ है।

दूल्हे के पास एक आदमी खड़ा है।

इस फोटो में मुझे तीन कुत्ते नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक फुटब्रिज नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के आगे दो बाइक हैं।

बीच में बहुत सारे लोग हैं।

इस फोटो में तीन नाव हैं।

नाव के ऊपर ऑरेंज कलर का झंडा लगा हुआ है।

इस फोटो में मुझे दो बस नजर आ रहा है।

एक बस रेड कलर का है।

दूसरा बस ग्रीन कलर का है।

बस के आसपास बहोत सारे लोग है।

एक आदमी बस में चढ़ रहा है।

ये फोटो साइड से एक नाव से लिया गया है।

ये फोटो सनसेट के टाइम पे लिया गया है।

नाव मे बहुत सारे तार लगे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ बादल भी नजर आ रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे एक ग्राउंड नज़र आ रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा स्क्रीन नजर आ रहा है।

ये फोटो एक कंस्ट्रक्शन साइट का है।

इस फोटो में तीन मजदूर हैं।

तीनों मजदूर ने गंजी पहन हुआ है।

वन फिश के बहुत सारे पैर हैं।

दुकान के बाहर दो साइकिल है।

दुकान के ऊपर एन_जे_बी पार्लर लिखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक पेंडाल नजर आ रहा है।

पंडाल के अंदर बहोत सारे लोग हैं।

पंडाल के अंदर दुर्गा मां का पूजा हो रहा है।

इस फोटो में दुर्गा मां का मूर्ति बना हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे बड़े बड़े टायर्स नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रहा है।

बिल्डिंग के आगे चार बाइक हैं।

इस फोटो में मुझे एक प्लेट नजर आ रहा है।

प्लेट के ऊपर व्हाइट राइस है।

राइस के बगल में कुकंबर और ओनियन रखा हुआ है।